वजन घटाने के लिए आते हैं और ट्रेनिंग करने के--

और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे सुंदर सुंदर सजावट भी हो रखी है।

जहां पर अपनी अपनी चीजें अलग अलग तरह से--

आप ने अपने स्थान पर रखी हुई हैं और यहां की सजावट--

नजर आ रहे हैं जो की बहुत ही अच्छा दृश्य है।

यहां का सामान जो भी है उसको इधर उधर उठा कर रख रहे हैं।

रखे हुए दिखाई दे रहे है।

यह एक बहुत ही अच्छी और सुंदर शॉप नजर आ रही है।

बहुत ही अच्छे तरीके और ढंग से--

यह एक बहुत ही बड़ी और अच्छी शॉप है।

जहां पर लोगो अपने अप्नं शरीर--

जहां पर अन्य अन्य प्रकार की गाड़ियां--

तरीके से सजावट की हुई है।

काम करने में व्यस्त हैं और यहां अच्छे अच्छे पेड़ पौधे--

अच्छे से ध्यान रखा गया है।

अपने अपने जगह पर रखा हुआ है।

छोटी सी शॉप दिखाई दे रही है यहां--

यहां घरों में यूज होने वाली स्टैंप पैड और ऑफिस में यू--

यह एक बहुत ही सुंदर और अच्छा--